जिसके ऊपर लाइट फोकस लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की से हाथ मिला रहा है और सामने कुर्सी भी डली दिखाई दे रही है और दीवाल सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है और पीछे गेट लगा भी दिखाई दे रहा --